गुरु कृपा डिजिटल लाइब्रेली इसमें मतलब की बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं।

आगे कोई खड़ा भी है।

एक हाल टाइप है इसमें मतलब की एक टेबल है परदे लगे हुए हैं।

दो आदमी खड़े हुए हैं।

ऊपर से पानी साफ आ रहा है।

उधर खाट भी पड़ी हुई है।

बस कांटा रखा हुआ है।

टेबल है टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है।